हरे रंग की घास है ऊपर तार दिखाई दे रहे है ऊपर की ओर नीला आसमान दिख रहा है हरे पेड़ भी है।

यह एक जगह का चित्र है यहाँ पे बड़े-बड़े पहाड़ और बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है उनके बीच मे गुफा है जहा पे काफी सारे लोग देखाई दे रहे है।

तीनो बस सफेद और नीले रंग की है बस के ऊपर से बिजली के तार दिखाई दे रहे है किनारे पे हरे पेड़ दिख रहे है ऊपर की और नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

अंदर की ओर एक काले रंग का शटर दिखाई दे रहा है।

चारो तरफ हरे पेड़ है उनमें रंग बिरंगे फूल भी दिख रहे है।